यह एक ग्राउंड है ग्राउड़ के पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे है जहाँ पर बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ना दौड़ने जा रहे है ।

यह एक अब्ल्युल्स या फिर यह एक ट्रैवल कार है।

यहाँ बहोत ही अच्छी जगह है। जहाँ पर एक बाइक खड़ी है जिसका नाम रॉयल इनफिल्ड है।

यह एक डी.जे. का सेट है जहाँ पर डी.जे. गाना बजता है।